यह एक स्कुल की तरह लग रहा है फुगो से सजावट की गयी है फूलो के सजावट की गयी है समने एक गेट हेगा नीले लाल और हरे फुगे टंगे है।

वगेरा पानी है पेड़ उघ रहे सारी जगह--

बहुत बड़ा बिजली का टायर दिया गया है और यहाँ खूब सारे पेड़ उग रहे है घास उग रही है खूब लम्बा टावर हेगा आसपास छते हेगी और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है।

और यहां ग्रीन रंग की लाइटें है एक अंकल निचे की और बेठे हुए है लाल कलर का सिधा हाथ पे पर्दा दिया दिया है और एक पीलर दिया है कथय--

यहा पे फुल उग रहे है और यहाँ पर डेकोरेशन की गयी है खूब सारे टेबले रखी हुयी है।

यहा सामने फुल लटक रहे है स्वागत किया गया है सादी का होल लग रहा है आसपास दो पीलर दिए गए है हरी और पिक कलर की लाइटे जल रही है दिचे की और फुल लटक रहे है।

यह सामने की तरफ एक बहुत--